लो फल का ठेला दिख रहा है एक आदमी का। एक रिक्शे वाला दिख रहा है। एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है नीला रंग का।